ये रास्ता है और बाइक ज --

एक नीचे खड़ा है और नीचे एक सेंडिल भी है और उम्म दो मर्द बैठ रहे हैं।

थोरा-थोरा दिख रहा है और लड़का का सिर्फ टोपी दिखा रहा है और एक बच्चा भी है।

और एक आदमी बाहर झारू बोछा रहैं हैं ।

और बैलून्स भी है।